साइड में बहुत सारे दरख़्त है एक बिजली का खंबा है एक दिखाई दे रही है बिल्डिंग जिसमें हरा पर्दा लगा हुआ है।